कितने खड़े हैं डिब्बे धरे हैं कप भी धरे हैं छोटे छोटे।

कीतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

ये नीचे यहां पर बाइक --

यहां पर एक बहुत बड़ा ढाबा है।

मट्टी भी पड़ी हुई है यहां पर दो--

यहां पर एक जिम हैं।

पारस का झंडा ले खड़े हैं।

कार सही करने वाला है।

लकड़ी छोटी छोटी सी नीचे भी पड़ी है। इस साइड में कट्टा भी धरा हुआ है।

यहां पर आदमी खड़ा हुआ है।

ये छोटा सा गमले धरे हुए है ऊपर--

और ऊपर लाइट भी लगी हुई है यहां पर।

और एक बोर्ड लगा हुआ है।

और यहां पर पानी भी भर रहा है।

मेज पर ये धरे हैं जिसमे सामान काल तैखाने का।

ये बहुत सारी समान टंग रहे हैं और धरे भी है बिस्कुट वगैरा।

और यहां पर लाल लीले पीले--

यहां पर कितनी सारी बुकें लगी हुई हैं।

बहुत बुक ही बुक है।

और ऊपर लाइट लगी है। खम --

यहां पानी है ब्रेड वगैरा हैं।

इस छोटी सी दीवार भी है।

और कचहरे के पीछे बड़ा सा बोर्ड लग रहा है बहोत बड़ा।

और यहां पर बड़े घर भी हैं जो चमक रहे हैं।

ये एक तरफ से दूसरी तरफ जाके उतारेगी आदमी को।

इसके नीचे एक रेल की पटडी है।

इक लाल कपड़े में कितनी सारी मछलियां पड़ी हुई हैं।

यहां पर लाइट भी लगी हुई है।

यहां पर इसमें अंदर प्लेट भी लगा सैट कर रखी हैं।

यहां पर सात आदमी बैठे हैं।

नीचे टाइल्स बिछी हुई है।

यहां की सजावट भी होई हुई है।

जिस पर कितने सारे पर्चे धरे हुए हैं यहां पर।

यहां पर कितनी सारी चेयर धरी है।

उसके ऊपर एक फैन और पीछे लाइट लग रही है।

यहां पर एक कुर्सी धरी है जो नीले रंग की है।

उसके ऊपर एक बड़ा स चेयर धरी है बड़ी स्टूल धरी है।

यह कोई डॉक्टर की दुकान है।